कपड़ों का कलर पिंक ऑरेंज येलो है यहां पर एक छोटी बच्ची की ड्रेस लटकी हुई है।

ड्रेस के ऊपर लाइटिंग दिखाई दे रही है उसके बाजू में नाइटी रखी हुई है।

उसके ऊपर पंखे लगे हुए हैं सामने एक घड़ी दिखाई दे रही है।

डब्बों के कलर ब्राउन पर्पल येलो व्हाइट क्रीम कलर के डब्बे है।

डब्बो के अंदर चॉकलेट्स काजू बादाम किशमिश रखे हुए हैं।

ऊपर तीन पंखे लगे हुए हैं यहां पर ऊपर तीन लाइटें लगी हुई है।

एक ने टी शर्ट पहनी हुई है तीन ने शर्ट पहना हुआ है।

लड़के ने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए है।

औरत ने येलो कलर का सलवार पेहना हुआ है।

इन जगह के अंदर पांच बाईके दिखाई दे रही हैं पांचो बाइक का कलर ब्लैक है।

सामने एक स्कूटी और एक बाइक खड़ी हुई है। एक स्कूटी का कलर व्हाइट है।

सोफे के पीछे बहुत सारे रंग बिरंगी कपड़े दिखाई दे रहे है।

ऊपर साईं हेयर आर्ट करके बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर कोई आदमी फोन पर बात कर रहा है एक आदमी टेम्पो में बैठा हुआ है टेम्पो का रंग ब्ल्यू है।

यह दुकान एक केक की दुकान है ये दुकान का नाम केक हाउस है।

सामने एक टेबल पर आंटी बैठी हुई है सामने दो बॉक्स रखे हुए हैं।

यह रास्ता एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा है बिल्डिंग का कलर व्हाइट और येलो है।

सामने टॉस के पैकेट दिखाई दे रही है। बाजू में बटर के पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

एक घर के ऊपर वलसाड वकील मंडप रूम लिखा हुआ है।

दरवाजे के बाजू में एक छोटी सी खिड़की लगी हुई है।

सामने दरवाजा खुला हुआ है सीढ़ियो का रंग काला है।

कार का कलर व्हाइट है कार के पास बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे पेड़ का कलर ग्रीन है।

यहां पर फुग्गो दिखाई दे रहे हैं फुग्गो का कलर येलो लाल ब्लू व्हाइट है।

दो सफेद कलर कार खाली है। इन दो कारों के बीच एक नारियल का झाड़ है। झाड़ का कलर ग्रीन है।

सामने एक पिज़्ज़ा की दुकान दिखाई दे रही है।

खंभों के ऊपर लाइट हाउस लिखा हुआ है लाइट हाउस लिखा हुआ के पीछे बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे --

पेड़ का कलर ग्रीन है नीचे बहुत सारी घास दिखाई दे रही है।